कितनी खूबसूरत जगह लग रही है जिसमें काफी लोग नदी के इस पार उस पार खड़े हुए है और इसमें आसमान कितना है सुंदर दिखाई दे रहा है।

को कितने प्यार से देख रहे हैं सभी की निगाहें सिर्फ एक ही जगह पर है और ऊपर एक टंकी बनी हुई है पेड़ है कितना सुंदर म --

इसमें मुझे काला सा लड़का दिखाई दे रहा है जो कि देखने में ठीक-ठाक लग रहा है और वो सेल्फी ले रहा है।